एक खम्बा लगा हुआ है जोकि ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है साइड में बहोत सारे पेड़ लगे है जोकि ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहे है यहाँ पे साइड में कुछ घास भी लगी हुई है जोकि ग्रीन कलर में दिख रही है ऊपर आसमान का कलर ब्लू रंग का दिखाई पड़ रहा है।

यहाँ पे पीछे कुछ रॉड लगी हुई दिखाई पड़ रही हैं यहाँ से पानी बहता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे पीछे रेलिंग लगी हुई है यहाँ पर निचे छोटी दिवार बानी हुई है जिस पर रेलिंग लगी हुई है जो कि ब्लू और ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रहा है ऊपर आसमान ग्रे कलर और ब्लू रंग में दिखाई पड़ रहा है।

सामने फूलों की लड़ियाँ लटकी हुई दिखाई पड़ रही हैं जो कि ऑरेंज रेड कलर में दिखाई पड़ रही है यहाँ पर सामने एक आदमी बैठा हुआ है पीछे एक बस दिखाई पड़ रही है जो की येल्लो रंग की दिखाई पड़ रही हैं यहाँ ऊपर आसमान वाइट रंग का दिखाई पड़ रहा है और साइड में यहाँ जमीन ग्रे कलर कि दिख रही है।

दो लेडिस दिखाई पड़ रही है पीछे एक लेडी और दिख रही है पीछे एक रेड कलर की कुर्सी रखी हुई है यहाँ पे बगोना रखा हुआ है यहाँ पर एक बास्केट जैसा रखा हुआ दिख रहा है पीछे एक --

सामने एक आदमी दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे एक ठो टेंट लगा हुआ ब्लैक रंग दिखाई पड़ रहा हैं पीछे कोई पिलर दिखाई पड रहा हैं व्हाइट रंग के ऊपर शायद रेड कलर का दिखाई पड़ रहा हैं ऊपर कुछ ग्रीन कलर के पेड़ दिख रहे हैं।

एक बड़ा सा डै ऐ उम्म ब बोर्ड जैसा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे बहोत सारा डेकोरेशन किया गया है यह पिंक कलर और ग्रीन कलर में दिखाइ पड़ रहा है।

लगावा लगा हुआ यहां पे सामने तीन लोग खड़े दिखाई पड़ रहे है यहां पे

सामने ग्रीन कलर का घास दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे सामने कुछ लोग दिखाई पड़ रहे है यहाँ पे दो लोग फावड़ा लिये हुए और खोद रहे है पीछे साइड कुछ लोग दिखाई पड़ रहे है पीछे बहोत सारे पेड़ लगे हुए है जो की ग्रीन कलर के दिखाई पड़ रहे है।

यहाँ पे सामने ब्लैक रंग में भी दिखाई पड़ रहा है यहाँ जमीन ब्रा - ब्राउन कलर की दिखाई पड़ रही है उपर छत भी ग्रे कलर की दिख रही है जिसपे लाइट लगी हुई दिखाई पड़ रही है।